यह स्कूल ब्लू और रेड कलर का पेंट किया हुआ है बिच-बिच में व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

वहां उसके नीचे भी मछली रखी हुई है।

इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग है जो पीले कलर की है।

किनारे में एक शंकर भगवान का फोटो लगा हुआ है।

पीछे में कुछ और व्यक्ति हैं जो कुछ काम कर रहे हैं।

यहां पर एक मूर्ति भी बनी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

इस फोटो में सामने में एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने लाल कलर का फ्रॉक पहना हुआ है।